स्कूल मे बच्चे सभी ड्रेस मे है सभी बच्चो की ड्रेस एक जेसी है उनके अरे--

एक पेट्रोल पम्प है अ आगे से एक बईक जा रही है दो आदमी पेदल जा रहे है।

यह एक होटल है जिसमे अरे टेबल के चारों तरफ कुर्सीया रखी हुई है और--

कार खड़ी हुई है कार के पीछे एक खाफी सारी बिल्डिंग्स बिल्डिंगों के पास हरे भरे पेड़ पौधे है काली रेड नीली व्हाइट खाफी कलर्स कार खड़ी--

यह एक नदी है। नदी के किनारे एक बोट रखी हुई है जिस पर कोई नहीं है। बोट मे काफी सारी चेअर रखी हुई है।

बीच मे भी नदी के बीच मे भी चटानो के टापू है।